अंडे बिछे हुए हैं और कुछ लोग बैठे हुए हैं।

जलिये पौधे खड़े हुए हैं।

चार पहिया गाड़ी खड़ी हुई हैं कुछ सफ़ेद कलर की कुछ काले कलल की।

और ये महिला अ ऊ नृत्य के भेष में खड़ी हुई है।

खड़ी हुई है और बच्चो से परीक्षा करा रही है।

उपसे लगा हुआ है।

और देवी मंदिर पर चढ़ाने के लिए फूल लोग खरीदते हैं और चढ़ाते हैं फूल।